शायद बिजली के और साइड में पानी के लिए कुछ रखा हुआ है और एक डब्बा है।

होलसेल एंड रिटेल दार एंड वाड़ी पगड़ी हाउ--

यहां पर ऊपर तलवंडी साबो लिखा हुआ है साइड में टी_एस_पी_एल लिखा हुआ है।

एक ट्राइपॉड स्टैंड पे एक कैमरा सेट कर रहा है दोनों ने सफेद रंग की टोपी पहनी हुई है एक आदमी ने--

और अलग अलग प्रकार का समान रखा हुआ है।

एक आदमी सबसे आगे खड़ा है जिसने व्हाइट र वाइट रंग के कपड़े पहने हैं।

काले रंग के टायर लगे हुए हैं और काले रंग की सीट लगी हुई है पास में कई सारे लोग बैठे हुए हैं और हरे रंग की घास लगी है।

अंदर एक खड़ा है जिसने नीले रंग की स्वेटर --

के अंदर कुछ केले अनार और संतरे रखे--

सामने एक बेड है जो ऑरेंज रंग का दिख रहा है।